कुछ मंदिर जैसा भी बना रखा है।

टेप रखी हुई है। फेविक्विक भी है।

कुछ ये टेबल दिख रहे हैं।